कितनी बढ़िया बस है। इस बस का कलर भी कितना मस्त लग रहा है और इस बस में ए_सी वगैरह भी होंगी। इस बस की सीटें वगैरह भी काफी अच्छी होंगी।

ये एक घर बन रहा है और इस घर में अभी काम चल रहा है ये घर बनने के बाद काफी अच्छा लगेगा।

ये कार ये रिपेयर कर रहे हैं ये कार बिल्कुल ठीक चलेगी कोई दिक्कत नहीं रहने की कोई समस्या हमारी कार में होती है तो ये रिपेयरिंग सेंटर में हम लेकर आते हैं।

लगता है इसके मंदिर में सब पूजा वगैरह करने आए हैं यह मंदिर काफी हद तक मान्यता है।

और ये कितना हरा भरा नजारा लग रहा है और यहां पर पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये बादल वगैरह और नीला आसमान ये कितना मस्त नजारा लग रहा है।

प्लेन हमारा सफर बहुत जल्दी तय करता है इसमें काफी मजा आता है प्लेन में बैठने में --

इस पियानो से हम जैसे कोई गाना होता है उसमें हम इस पियाने की मदद से वो चीज डाल सकते हैं संगीत या सोंग वगैरा ।

किसी तरीके का फंक्शन है होटल वगैरह में यहां कितनी अच्छी हमें फर्शनलिटी वगैरह मिलती है लाइटिंग कितनी अच्छी है और यहां कितने सारे लोग हैं।

यहां लोग सब खाना खा रहे हैं मन से ये सब अपना खाना खाके पेट भर है कोई फंक्शन में --

इस बुंटों में काफी ज्यादा पोषण काफी ज्यादा प्रोटीन वगैरह हमें मिलता है ये बुंटे हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं इस बुंटों को हमें खाना चाहिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं।

ये गार्डन कितना सुंदर लग रहा है देखने में और ये बीच में फवारा कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है और ये गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है।

और ये पेड़ वगैरा कितने सारे हैं यहाँ पर और यहाँ पर हरियाली वगैरा कितनी अच्छी लग रही है। वो रोड कितना सुंदर --

ये एक बैंक है और यह बैंक ऑफिस है और इस बैंक में हमें बहुत अच्छी सर्विस मिलती है।

इस मंदिर को कितनी अच्छी तरीके से बनाया है और ये कितना बड़ा और कितना अच्छा मंदिर है।

ये एक टैंपल है और ये टैंपल कितना पुराना टैंपल है और ये कितना मस्त और कितने सुंदर तरीके से बना हुआ है।

इस लड़के ने काफी मेहनत करी है ये लड़का बहुत बढ़िया लग रहा है अब बॉडी बनने के बाद --

प्रोग्राम हो रहा है और इस स्टेज को कितनी अच्छी तरीके से सजाया है यह एक वेडिंग फंक्शन हो रहा है यहां कितने सारे लोग आए हैं इनकी वेडिंग में --